एक सीढ़ी दिखाई दे रही है एक कच्ची सी --

इस चित्र में एक रास्ते का दृश्य है।

ये फोटो किसी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के शोरूम का है।

एक व्यक्ति एक बच्ची के साथ है।

चित्र में एक दुकान मार्ट का दृश्य है।

काफी वस्तुएं बाहर रखी हुई है।

के हाथ में त्रिशूल और भाला दिख रहा है।

कुछ कागज नीचे बिखरे पड़े हैं।

आसपास सीमेंटेड चौहद्दे बने हुए हैं।

इस चित्र में शहर का चौराहा दिखाई पड़ रहा है जहां काफी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं।

काफी बैनर्स लगे हुए हैं पेट्रोल पंप दिखाई पड़ रहा है।

इस चित्र में ऊंचाई से लिया गया एक खूबसूरत दृश्य है।

दो तरफ काफी ऊंचे ऊंचे पर्वत पहाड़ दिख रहे हैं।

इस आइस क्रीम पार्लर में काफी आइसक्रीम के मशीनें रखी हुई है।

खेल के मैदान में काफी लोग मैदान के बीचो बीच खेलते दिखाई पड़ रहे हैं।

एक व्यक्ति हाथ में बैट लिए हुए दिखाई पड़ रहा है।

पहली तरफ एक व्यक्ति लैपटॉप पर कुछ काम करता दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग के ऊपर बॉश सर्विस लिखा हुआ है।

दाहिनीं तरफ एक व्यक्ति भी दिखाई पड़ रहा है।

पीछे की तरफ दो बसेस दिखाई पड़ रही है जो पीले रंग की है।

ओरिजिनल रंग बिरंगी कुछ गमले प्लास्टिक की खाली पड़े हुए हैं।

इस चित्र में एक हरा भरा खुला मैदान दिखाई पड़ रहा है।

इस पे काफी लोग चढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे है।

एक व्यक्ति हाफ पैंट और सफेद टी_शर्ट में चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।

ये दुकान के अंदर लोहे के अलमीरा बने हुए हैं जो ओपन है।

इस चित्र में किसी गाड़ी के सर्विस सेंटर का दृश्य दिख रहा है।

कुछ बच्चों ने नीली रंग की जींस टी_शर्ट पहन रखी है।

और एक काले रंग का टी शर्ट पहना व्यक्ति लोगों को पढ़ा रहा है।

जिसके ऊपर एनिटिक सुपर स्पेशियल्टी हॉस्पिटल लिखा हुआ हैं।